समोसा मिठाई बिक रहा है।

यहाँ सब घूमने आये है एक बच्चे को गाड़ी पर घुमा रहे है एक --

वहां बहुत अच्छा लग रहा है एक घड़ी लगा हुआ है।

बहुत सा गाड़ी चल रहा है बहुत सा घर लोक रहा है।

बहुत अच्छा से सजावा हुआ है फूल-पत्ती है पेड़-पौधा है।

बहुत रंग -बिरंग के गमला टंगा हुआ है बहु उसमे फूल --

और बहुत अ बहुत अ बहुत अच्छा-अच्छा एजा पर जिम करने वाला मशीन है।

सब लोग खरीद रहे है।

बहुत उसको अगल-बगल हरा-भरा पेड़-पौधा हुआ है।

कुछ कोई चीज का प्रोग्राम लगता है कि होवेगा।

पेड़-पौधा लगा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में।

द्रुप एक दुकान है वहाँ पर पंखा लगा हुआ है।

वहाँ पर लोग जा कुछ लोग जा रहे है ओकर नीचे कचरा बिगाता है बहुत अच्छा तलाई है।